लगता है की यहां पे हमे जाली का ब्लू कलर का गेट देखने को मिल रहा है जोकि इस टाइम खुला हुआ है और हम देख पा रहे है की छोटे-छोटे बच्चे है बच्चियां जिन्होंने स्कूल ड्रेस पहनी हुई है और अपने कंधे पे बैग टांगा हुआ हैं।

सामने की तरफ हमे कुछ टीचर्स सर और मेदम वगेरह खड़े हुए नजर आ रहे है और हम देख प रहे है की वो स्वागत कर रहे है फूलों से उन बच्चों का अंदर की तरफ आते--

और हम देख पा रहे हैं नीचे की तरफ वहां पे कुछ लोग खड़े हुए हमे नजर आ रहे है जिसमें लड़के-लड़कियां आदमी वागेरा हैं और सामने एक स्टेज है इस बीच मे एक आदमी है जिसने सर पे कुछ पहना हुआ है और दोनों दो लड़के --

देख सकते है कि यहां पे हमे काफी हरे-भरे से पेड़ नजर आ रहे है और ये किसी शहर मे उगे हुए है हम देख पा रहे नीचे की तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए --

और इसमें बहुत सी औरतें और बहुत से आदमी वगैरा है और यहां पे अपने हाथों में झंडा जैसे कुछ लिए हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं सामने एक ब्राउन कलर की बिल्डिंग भी बनी हुई काफी प्यारी लग रही देखने --

हम देख पा रहे है की हमे व्हाइट कलर की एक वॉल देखने को मिल रही है जिसके ऊपर प्रोजेकटेर के थ्रू एक स्क्रीन प्ले होता हुआ हमे नजर आ रहा है और हम देख सकते है की वहां पे मारून कलर का एक शर्ट पहना हुआ एक लड़का है जो की वहां कुछ समझा रहा है ग्राफ के अंदर--

लगता है कि हमे मट्टी वाली एक जमीन देखने को मिल रही है जहां पे कुछ पत्ते और कुछ कचरा वगैरा सब गिरा हुआ है हल्का सा और हम देख पा रहे है यहाँ पे एक आदमी जिसने येलो ब्लैक चेक कल-कलर का शर्ट पहना हुआ है और हम देख सकते है कि यहां पे उसने लोअर भी पहना हुआ है।

हम नीचे और बाद जाए तो यहां पे हम देख सकते है हमे बाउंड्री नजर आ रही है जो कि ग्रीन लाइट ब्लू और --

जहां पे काफी सारे इक्कठे अंदर पैक कर के रखे हुए है हम दे --

--अ कलर का शर्ट पेहना हुआ है और उसने अपने बाजू को फोल्ड कर के रखा हुआ है बेल्ट लगा रखी है।

सामने की तरफ हमें एक ग्रीन कलर का एक मकान भी देखने को --